सर के ऊपर टोपी लगा रखी है और टोपी लगा रखी है इसके अलावा देख ही सकते हैं जो हार्ट शेप में यह बनाया गया है।

अ हाथ जो है उन पहड़ो के बीच से ऊपर किया हुआ है और पत्थरों के बीच में एक आदमी फंसा हुआ --

इसमे देखिए आपको एक लड़का है। जिसने जो है बोहोत ही अजीब अजीब टाइप की जो है करवा रखी है हेयर स्टाइल पर ये जो हेयर स्टाइल हैं काफी अ यूनिक और अच्छी लग रही है देखने में।

और यहाँ पर इसमें गुब्बारे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और जो गुब्बारे हैं ये आप देख सकते हैं कि नीचे आपको ग्रीन और सभी दिख रहें हैं बाकी इसमें लोग इसमें खड़े हुए दिखाई दे रहें हैं।